इधर एक लाइट लगा हुआ है।

यहां पंखा भी है और बैलून भी लगाया हुआ है।

जो की कुर्सी पर बैठा हुआ है। बहुत आदमी खड़ा है। और यहां का बहुत अच्छा नजारा--

का आदमी हैइधर गाड़ी पर बैठा हुआ है।

और बहोत बढ़िया छोटे छोटे पेड़ हैं और केला का भी है केतारी का भी है।

कार है जोकि लाल कलर का है खड़ा कर दिया है उसको उठा लिया है ऊपर मे?

यह सामने में एक गेट है गेट के पास एक आदमी भी है।

और पोस्टर भी लगा हुआ है सामने में पेड़ भी है।

और सामने में एक दो टावर भी है।

और एक गेट लगा हुआ है इधर सामने में एक काला कलर का टी_बी है इधर सादा कलर का बोर्ड है।

सामने में ही एक आदमी है जो काला कलर का शर्ट पहना हुआ हैहाथ में घड़ी पहना हुआ है।

एक पेट्रोल पंप है जोकि बहुत अच्छा है और इधर सामने में दो झंडा है जो एक ब्ल्यू एक लाल कलर का है।

ये बहोत सारे आदमी यहां पर घर बना रहे हैं।

और इधर बगल में भी एक फूल का बना हुआ है इधर सामने में एक डब्बा रखा हुआ।

पर सामने में एक बोर्ड भी है और लाइट भी लगा हुआ है और पूरा घर सादा कलर का है।

यहां पर एक दुकान हैजो की बहुत अच्छा है इधर सामने में एक ठेला भी है।

और यहां पर भगवान की फोटो जैसे की बहुत सामान रखा हुआ है।

एक पेट्रोल पंप है यहां पर ढेर गाड़ी है जोकि पेट्रोल ले रही है।

और यहां पर एक गेट भी है और बहोत अच्छा यहां का दृश्य भी है।

यहां पर झिकबिकिया लाइट लगाया हुआ है और बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं।

और इधर बहुत आदमी हैंयहा का नजारा भी बहुत अच्छा है।

दुकान है जो शटर का गेट लगा हुआ है।

इधर बगल में शुभ-लाभ और स्वस्तिक लिखा हुआ है।

और बहोत सारे सामान रखा हुआ है जिस तरह चार्जर और भी समान है ढेर सारा कुर्सी भी है।

और घर के सामने में एक टोटो खड़ा है इधर एक कार भी खड़ा है।

यहां पर बहुत आदमी भी हैं बहुत लाइट लगा हुआ हैं।

आउ ब्लू कलर का एक पोछना भी रखा हुआ है।

बहोत बाड़े बड़े पहाड़ भी हैं।

ये जो कि कपड़ा आयरन कर रहा है।

और सामने एक गाड़ी पर एक आदमी पर बैठा हुआ है जो कि हेलमेट पहना हुआ है।

बोर्ड के पास एक बल्ब भी लगा हुआ है।

रूम में पंखा भी लगा हुआ है सामने में पर्दा भी लगा हुआ है।

और एक बैलून भी है। उधर साइड साइड में कुर्सी भी रखा हुआ है।

एक स्टेशन है जिसमें एक आदमी है और पीला कलर का है।